यहाँ पे बहुत सारे बैलून भी लगाई गई हैं। यहाँ पे पुतलों के ऊपर मम अलग-अलग प्रकार के ड्रेसेस पहनाए गए हैं।